ये मन ईशा मंदिर हैं। इशू जी की-- प्लेट राखि गई है ।

ये देखिए गाइज ये रात का व्यू है बहुत ही सुंदर है लाइट जल रही है और ये अंधेरा-अंधेरा घर है।

एक तरफ अंदर मशीन मे ही निकाल रहे है मनी और शीश शीशे का दरवाजा है।

ये देखिए गाइज ये भी टावर है के अगल- बगल पेड़-पौधे हैं और ये शाम का टाइम है।

यह देखिए यह तिरछी इमेज है| यह मंदिर है छोटा-सा रेड कलर जिसका गेट है|

हरी मिर्च है बैगन है बहोत प्यारी-प्यारी सब्जिया है और इसके अगल-बगल खेत है पेड़-पौधा है।

अअ एक लैम्प भी लगा बहुत प्यारा सीन है घूमने का घूमने का भी बहुत अच्छा जगह है ये बहुत प्यारी जगह है ।

गाइज ये देखिये ये भी बहुत ही मस्जिद है प्यारी-सी| फिर बगल में मंदिर है पीछे साइड और ये नदी है नाव चल रही है बहुत सारे लोग आए हुए हैं घूमने।

बहोत ही प्यारा नेचर है बहोत ही अच्छा लगता है यहाँ---

दूर-दूर पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं और खूब बड़ा-सा मैदान है।